ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसके अंदर जो है एम आई का टलीकॉम --

सब बड़े साइज़ के कप्स हैं और अलग अलग कलर के कप्स हे जो हमे नजर आ रहे हैं ।

और बहुत ऑटो भी दिख रहा है एक ठेले के ऊपर ये रखी हुई है सब लोग इसको देख रहे है।

ये जो आप चित्र देख रहे हे इसके अंदर आप लोग देख सकते हे गुरु नानक पब्लिक स्कूल --

जो है वो लगा हुआ है और यहाँ पे इसका डोर है और आप अंदर जाते हुए देख सकते है।

और क्या कहते है गार्डन का बोर्ड लगा हुआ है बहोत सारे पेड़ है बहर की साइड में खम्भा भी दिख रहा है।

ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसके अंदर जो है एक लड़का है वो जिमिंग कर रहा है।

और ये यहाँ पर उसके हाथ में जो है वो जो है वो बहोत सारे लोड वो उठा रहा है।

ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये एक चर्च का है यहां पर आपको दिख सकता है।

ये जो आप चित्र देख रहे इसके अंदर जो है एक गुफा सी नजर आ रही है और बहोत --

ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसके अंदर एक मेडिकल शॉप है।

उसके आगे एक और डायनासोर बना हुआ है इस बिल्डिंग के अंदर इनको जो है वो अं ऐसा सजा कर रखा गया है।

ये जो आप चित्र देख रहे है इसके अंदर जो है अ एक तलाब जैसा बना हुआ है और बीच में कुछ पत्थर रखे गये है जहां से लोग गुजर के आर-पार जा रहे हैं।

ये जो आप एक चित्र देख रहे है जिसके अंदर बहुत सारे कपड़े टंगे हुए है जैसे कि एक शोपिंग के लिए--

कपड़ों को टांगा गया हो और बहुत सारे कपड़े लाइन से टंगे हुए हैं सामने भी टंगे हुए हैं।

ये जो आप एक चित्र देख रहे हैं इसके अंदर जो है एक डाइनिंग सा रूम बनाया गया हैं जिसके अंदर सामने जो हे वो --

एक फ्रेम रखा गया है उसके ऊपर जो है वो अवार्ड भी रखा गया है और इस फ्रेम के अंदर बहुत सारी चीजें रखी गई हुई--

थोडा सा जगह बनी हुई है जहां पे पेड़ लगे है खुबसुरत सी इस जगह को बनाया गया है ।

ये जो आप एक चित्र देख रहे हैं इसके अंदर एक ब्राउन कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है ।

ये जो आप एक चित्र देख रहे हैं इसके अन्दर जो है अ यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ उसके अन्दर बहुत सारे सामान रखा गया है जैसे की--

इस चित्र के अंदर जो है वो अलग-अलग कलर की साड़ियाँ टंगी हुई हैं हेंगर के ऊपर--

इसके सामने एक बच्ची हैं जो खेल रही हैं एक कार खाड़ी है लाल कलर की एक एक्टिव खड़ी हुई है ।

ये जो आप एक चित्र देख रहे हैं इसके अंदर जो है वो एक जो है बना हुआ है--

अंदर एक मूर्ति बना के रखी गई है और कांच के अंदर और बहुत सारे पेड़ लगे हैं।

कैट दिख रही है बर्ड्स दिख रही हैं अलग-अलग प्रकार की चीज़े इसमें नज़र आ रही है ।

ये जो आप एक चित्र देख रहे है इसके अंदर जो है वो आ कार--

यह जो आप एक चित्र देख रहे हैं इसके अंदर बहोत सारी लड़कियां जो है वो नृत्य कर रही हैं।

और यहाँ पे स्टेज बना हुआ है बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे है इसे देखने के लिए।

इस चित्र के अंदर जो है एक गार्डन सा नजर आ रहा हैं बीच में एक गोल --

अ चित्र बना हुआ उसके अन्दर बहोत सारे पेड़ लगे हुए है और कही पे घास है और कही पे जो है वो--

कित्ते खूबसूरत और जो है ये नजारा नजर आ रहा--

ये जो आप एक चित्र देख रहे है इसके अंदर बहुत सारे जो हैं कपडे रखे हुए है।

यहां पे मेन जो है काउंटर भी नजर आ रहा है बहोत सारी चीजें रखी हुई दिख रही हैं।

उसमे तकिये भी लगे हुए है बहुत सारे बेड्स डले हुए है ठहरने की जगह के है ये।

ये जो आप एक चित्र देख रहे हैं इसके अंदर एक बिल्डिंग बनी हुई है बहुत सारे लोग इसके अंदर जा रहे हैं ।

ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये एक होटल है यहाँ पे बहुत सारे चेयर्स लगी हुई है।

पाइप के जरिए ये ब्लैक कलर का पाइप है और अच्छे से प्रेशर से ये पेड़ों मे पानी डाल रहा है।

और एक शो रूम के अंदर खड़ी हैं जो सजा धजा एक शो रूम हैं और ये नई कार दिखाई दे रही है ।

वो बस इसका इन्तजार कर रहे हैं बहुत सारी यहाँ पे बसें खड़ी हुई दिख रही हैं ।

और यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग इनको शॉपिंग करा रहे है दिखा रहे है सामान।

ये जो आप एक चित्र देख रहे हैं इसके अन्दर एक शॉप है जो जहाँ पे बहुत सारी साइकिले मिल रही हैं बड़ी साइकिले बच्चो की साइकिल मीडियम साईज साइकिले --

ये जो आप पिक चित्र देख रहे हैं इसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है और--